ऑब्जेक्ट्स बनाने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
रेफरेंस वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमरी निर्धारित करना
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबुंटू उबंटु 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स इडे 370 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि इक्लिप्स का उपयोग करके सामान्य क्लास कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल पर इन विषयों पर उपलब्ध स्पोकन ट्यूटोरियल देखें
हम जानते हैं कि वेरिएबल्स और मेथड्स एक साथ मिलकर क्लास के मेम्बर्स बनाते हैं
क्लास के मेम्बर्स को ऐक्सेस करने के लिए हमें क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता है
अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है
ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस है
प्रत्येक ऑब्जेक्ट में स्टेट और बिहेवियर होता है
ह्यूमन बेइंग क्लास के उदाहरण को याद करें जिसकी हमने पिछले ट्यूटोरियल में चर्चा की है
ऑब्जेक्ट इसके स्टेट को फिल्ड्स या वेरिएबल्स में संचित करता है
यह मेथड्स के माध्यम से इसके व्यवहार को दर्शाता है
अब रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में सीखते हैं
हम जावा में 8 प्राइमिटिव प्राथमिक डेटा टाइप के बारे में जानते हैं
प्राइमिटिव्स के अलावा अन्य सभी टाइप्स ऑब्जेक्ट्स के लिए रेफर होते हैं
वेरिएबल्स जो ऑब्जेक्ट्स के लिए रेफर होते हैं वे रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं
स्टूडेंट क्लास पर वापस जाएँ जिसे हमने पहले ट्यूटोरियल में बनाया है
अब इस क्लास से मैन मेथड को हटाएँ
अब कंट्रोल और एस कीज को एक साथ दबाकर फाइल को सेव करें
अब उसी प्रोजेक्ट में टेस्टस्टूडेंट नामक एक और क्लास बनाएँ
मैंने यह पहले ही बना दिया है
इस क्लास में मेरे पास मेन मेथड है
अब मेन मेथड के अंदर मैं स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा
इसके लिए मेन मेथड में टाइप करें स्टूडेंट स्पेस स्टड1 इक्वल टो न्यू स्पेस स्टूडेंट ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स सेमीकॉलन
इस प्रकार हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है
यहाँ स्टूडेंट क्लास का नाम है जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है
स्टड1 एक रेफरेंस वेरिएबल है जो स्टूडेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का जिक्र करता है
और न्यू कीवर्ड नया आब्जेक्ट बनाने के लिए स्थान बनाता है
कृपया ध्यान दें स्टड1 स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है
यह केवल बनाये गये नये आब्जेक्ट का रिफ्रेंस रखता है
अब देखते हैं कि स्टड1 क्या सम्मिलित करता है
अतः अगली लाइन टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में स्टड1 कंटेन्स स्पेस प्लस स्टड1 और फिर सेमीकॉलन
अब फाइल टेस्टस्टूडेंट डॉट जावा को सेव और रन करें
हमें निम्न आउटपुट प्राप्त होता है
अतः यहाँ स्टूडेंट बनाये गये नये ऑब्जेक्ट के क्लास का नाम है
दूसरा भाग बनाये गये नये आब्जेक्ट का मेमरी एड्रेस है
हम स्टड1 का उपयोग करके स्टूडेंट क्लास के फिल्ड्स और मेथड्स को ऐक्सेस कर सकते हैं
हम इनके बारे में अगले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
अब मैं स्टूडेंट का एक अन्य ऑब्जेक्ट बनाऊँगा
अतः मैं टाइप करूँगा स्टूडेंट स्पेस स्टड2 इक्वल टो न्यू स्पेस स्टूडेंट ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स सेमीकॉलन
नोव टाइप नेक्स्ट लाइन अब अगली लाइन टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में स्टड2 कंटेन्स स्पेस प्लस स्टड2 और फिर सेमीकॉलन

अब इस फाइल को सेव और रन करें
हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टड1 और स्टड2 दो अलग ऑब्जेक्ट्स का जिक्र करते हैं
अर्थात स्टड1 और स्टड2 दो अलग स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं
उनके भिन्न रोल नम्बर्स और नाम हैं
अब हम यहाँ बदलाव कर सकते हैं
यहाँ टाइप करें स्टूडेंट स्टड2 इक्वल टो स्टड1 अब इस फाइल को सेव और रन करें
हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टड1 और स्टड2 दोनों समान ऑब्जेक्ट का जिक्र कर रहे हैं
इसका अर्थ है कि स्टड1 और स्टड2 दोनों रोल नंबर और नाम के साथ समान स्टूडेंट का जिक्र कर रहे हैं

अतः इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा
रेफरेंस वेरिएबल्स नये ऑपरेटर का उपयोग करके ऑब्जेक्ट बनाना
और रेफरेंस निर्धारित करना
स्व मूल्यांकन के लिए
टेस्टेम्पलॉयी नामक अन्य क्लास बनाएँ
ईएमपी1 रेफरेंस वेरिएबल के साथ एम्प्लॉयी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएँ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
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं